यह स्विमिंग पूल है इस स्विमिंग पूल में बहुत सारे नकली बत्तख --

बड़े-बड़े एवम आमो के पेड़ है ये एवम बहुत सारे छोटे-छोटे फूलो के भी पेड़ है।

यह मेला में बहुत सारे लाइट लगे हैं बहुत सारे दुकाने भी हैं बहुत ही भीड़ हैं ।

एक गेट लगी है एवम इन्वर्टर भी है यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक टावर है यह टावर से हमलोग के मोबाइल में --

यह टेम्पो में चुनरी भी टंगे हुए हैं यह टेम्पो में बहुत सारे आदमी बैठते हैं यह टेम्पो की है यह टेम्पो भाड़े पे दिए जाते हैं।

पेट्रोल एवं डीजल रखे जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ भी लगी हुए है छोटी एवं बड़ी है यह पेट्रोल पंप में बहुत सारे आदमी भी हैं बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हैं ।